देखने मिल रहे है निचे फर्श देखने को मिल रहे है बहुत आछो काम हो राखो इने --

इस में एक पेड नज़र एक पेड़ दिखाई दे रहा है नीचे लोहे की बेट्री नजर आ रही है।

इस इमेज में देख ने को मिल रहे हैकी एक हरे कलर के तिरपाल दिखाय दे रहे है सफ़ेद कलर की दिखाय दे रहे है लाल--

इसमें देखने के लिए एक काला कलर का देख रहा है और यहा पे पेड़ पोधे दिखाय दे रहे है।

देख ने को मिल रहा है कृषि महाविधालय नागौर लिख रखा है निदेशालय जोधपुर लिख रखा है